जो के बहोत पत्थरों से मिल के बनी है और इसके डिजाईन वाली दिवार बनी है। इसके अन्दर भी जंगल है और बाहर काफी हरियाली है। इस दीवार के अन्दर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

तस्वीर में जो हम देख रहे हैं ये एक कपड़ों की दुकान है।

इस रोड पे म्युनिसिपालिटी की गाड़ी जा रही है और एक व्यक्ति पैदल जा रहा --

इस तस्वीर में ये जो है एक मालगाड़ी है।

इनके पीछे एक टीला है और ये सफेद कलर के बाउंड्री में खड़े हैं बहुत ही अच्छे प्यारे गधे हैं।

और पुरानी कारों को अच्छी तरीके से मरम्मत की जाती है सर्विस की जाती है।

और काफी सुंदर है इस तालाब के किनारे हरी-हरी घास है ऊंची-ऊंची और एक पेड़ है बहुत अच्छा।